अपनी अपने उत्तराखंड में बेटे मजा ये लगाता जाने का --

अपना जो मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है।

इतने लोग दिल्ली तरफ जाते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी वो इमारत बनी रहती है यार मजा आता है देख के अब बड़ा मन करता है यार मेरा भी लेना चाहिए लेकिन यार पैसा नहीं है मेरे पास पैसा हो तो मैं भी कोई बढ़िया बंगला टाइप दिला --

यार अब के जो मैं मकान बनाऊंगा ना अपना तो मैं एक दीवाल में मतलब डिज़ाइन से जो है न एक एक पत्थर लगवाऊंगा और रंग बिरंगे पत्थर लगवाऊँगा जो शाइनिंग वाले चमकमार है। बहुत अच्छे लगते है वो पत्थर मेरे को।

ऑटो की सवारी खई है यार इतनी बढ़िया लगती है उसम बैठ के ऐसी हवा लगती है साइडों से मजा आता है ऑटो की सवारी खाने में आवाज करता है ना गुर गुर की ओ भैया इतना मजा आता है बहुत अच्छा --

इतना मजा आया था यार मोह पे जो है ना इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे।

यार जो बैंड आया था बैंड और उसमें दो कॉलम लग रहे थे यार बैंड कितना अच्छा बजरिया था यार वो इतनी बढ़िया आवाज दे रहा था तो उसमें लाइट लग रही थी रंग बिरंग के --

एजेंसी से चलना यार कार वाली वो मेरी गाड़ी वाली ठोक गई थी ना तो मैं एजेंसी को दे आया था यार उन्होंने बोला था कि दस तारीख को आ जाइयो आज चलना है देख काहे गाली सही हो गई।

गाड़ी से चलेंगे यार। वो थोड़े मम्मी बोल रही थी टमाटर खत्म हो गये। टमाटर ले अइए। चटनी बनानी है टमाटर की। ना टमाटर की चटनी तो मुझे भी अच्छी --

और यार जब हम गांव जा रहे थे उसके दिपानछू के --

वहां पर जो पेड़ आ रहे थे यार वहां पर फोटो ख था कितना अच्छा फोटो आया था यार पानी भी आया था पीछे का --

ओ यार मेरे दोस्त के पापा जो है ना यार वह ट्रेन का इंजन बनाते हैं यार --

अरे यार मैंने ना यार एक दुकान पे वो देखी थी यार गौतम बुद्ध की मूर्ति --

आ चल यार। धनतेरस आ रही है आ। चल वो ही लिया है यार। एल.सी.डी. यार।